और नीचे में कई सारे छोटे छोटे पक्खल दिखाई दे रहे हैं और एक बॉल दिखाई दे रहा हैं।

वो वाइट कलर के शर्ट पहने हुए है और सामने पे कुछ लिखा हुआ है लाल कलर में--

अंकल दिखाई दे रहे है और कुछ एक भाई बड़े भाई जैसे दिख रहे है और एक कोकोकोला का लिखा हुआ दिखाई दे रहे है।